और यह एक ब्लैक कलर की जाली के अंदर पड़े हैं और अन्य अन्य प्रकार की बोलें भी दिखाई दे रही है।

और इस बिल्डिंग के ऊपर अन्य अन्य तरह के कांच लगे हुए हैं और कुछ पुतले भी बनाए हुए हैं ड्राइंग बनाई हुई है।

यह एक भोजनालय है इस यह ढाबा है जिसके आगे एक बोर्ड पर चाय कॉफी नास्ता और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखा हुआ है।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

यह एक बिजली बोर्ड की तस्वीर है जिसके अंदर बहुत से टावर लगे हुए हैं व खंभे लगे हुए हैं इसके अंदर बहुत से तारें निकली हुई हैं।

एक वो आदमी हाथ में पौधा लिए खड़ा है जो कि बैंगनी कलर का फूल है उसपे एक--

यह एक कॅफे दिखाई दे रहा हैं जिसके अंदर कुछ कुछ काउंटर रखें हुए हैं।

और एक ए_सी लगी हुई है और एक पंखा चल रहा है लाइट लगी हुई है और एक सेड के ऊपर कुरकुरे रखे हुए हैं।